और एक लम्बी ब्रिज गई है जिसकी पिलर बहोत सारे सफ़ेद कलर की है।

सफ़ेद कलर का पेंट पहन रखा है और दुकान का कलर सफ़ेद और लाल में है। सामने एक बाल्टी भी रखी है।

आस-पास में कुछ और भी पेड़ पौ --

मुझे एक चित्र दिख रही है जिसे --

मुझे एक चित्र दिख रहा है। ऐसा लग रहा कि ये कोई --

अच्छे लग रहे है और हरे-भरे हैं।

मुझे एक चित्र दिख रही है जो एक सड़क है।

और कुछ पिलर है जिसमें बैलून --

ये एक चित्र दिख रही है जो एक सड़क है। पास में कुछ दरमे रखे हुए हैं और बहोत सारे झंडे दिख रहे हैं।

पास में बांस रखे हुए हैं लकड़ी के।

और चक्की काले रंग की --

बहोत सारी फूल लगी हुई लाल ब्लू ऑरेंज --

और फ़ोन की बोहोत सारी छवि भी दिख रही हैं।

ऐसा लग रहा है कि वो एक दवाखाना है।